यह ग्राउंड है ये ग्राउंड में काफी लोहे की छोटी-छोटी तार बनाकर यहाँ पर घेर दी गई है एवं यहाँ पर जाल भी दिए गए हैं यहाँ पर बहुत सारे बत्तख --